है जो अपना फोटो सेल्फ़ी लिया है यह फोटू बहोत अच्छा लग रहा है।

और बहुत सुन्दर भी दिख रहा है सब कुछ अच्छा हरा-भरा है और ये इसमें कुछ चीजों के मशीने लगी हैं जैसा लग रहा है कि किचन टाइप का है नहीं किचन नहीं है ये समान उमान रखा गया है।

जो की बहो सुन्दर लग रही हैं सब।

और इसमें एक जेन्ट्स टाइप के जा रहे है उधर।

सेविंग करा रहा अपना जो कि बाल कटवा रहे हैं एवं लड़का है जो काट रहा है और --

जो की इसमें पढ़ने वाला है ऊपर लिखा है वेलकम और उ वहा खिड़की भी है जो की वो हवा बतास आता है उजाला भी आता है जो की बोहोत खूबसूरत लग रहा है जो भी बच्चे पढ़ते होंगे --

एक घर भी है यहां पर जो अच्छा लग रहा है एक लड़का है जो पानी धो रहा हाथ --

या ऑटो है दो ऑटो खड़ी है एक इसमें लड़का है इसमें जो चलाने वाला ड्राइवर दोनों लोग हैं लोग --